और यहाँ के दृश्य को देखकर मुझे अ बहुत अच्छा लग रहा है। अपने ऐसे दृश्य को देखना मुझे बहोत पसंद करता है।

में लोग आये हुवे हैं। यहाँ एक लड़की ने पिछ ने जैसा टंग रहा है और एक लड़की का मुँह खुला हुवा है।